खड़ु होयुं जैन दुई हाथ पिछाड़ीन करयां कुत्तान दिखेणा तीन कुत्ता दुई कालान एक ब्राउन कुत्ता भुरू कुत्ता रेल की पटरी दिखेणी एंच शटरन दिखेणा बिजली का खम्बा दिखेणा बिजली की तार दिखेणी।

एक आदमी दिख्योणु जैन हाथ टेडो कर्यु मास्क लगाई चश्मा लगायाँ वेका पिछाड़ी पीली कलर की नाव जिफर टायर लटकायुँ।

पिछाड़ी नाव पर झंडान लगायुं लाल पीला नीला नाव का एंच कई सारा लोगन खड़ा होयां नाव पर हरयूं कलर होयुं खिड़की बणाई।

नीसाण गुब्बारान बहोत सारा लगायां सफ़ेद अर नीला कलर का गुब्बारा लगायां लोगन खड़ा होयां मुंडस्यारू जाननी खड़ी होईं पिली कमीज कैन एकन पिली कमीज पैनी यखम साड़ी पैनी।

थर्मकॉल का डब्बान दिखेणा और सारा लोगोंन दिखणा जो माछा लेणान आयां ये दुकानम।